मैट्रिक का समान भरा पड़ा--

यहां पर बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही हैैं।

और किनारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे--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

किनारे किनारे हरियाली छाई हुई है।

यहां पे बहुत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है।

है किनारे हरे पौधे भी दिखाई--

यहां पर बहोत अच्छा मैदान जैसा बना--

पीछे पर्दे ऊपर पंखा सा लगा--

एक काली गाड़ी खड़ी है और यहां पर बहोत--

बहोत अच्छी लग रही--

बहुत अच्छे जगे में--